तरह-तरह के चीज जेवर मोबाइल और चेयर और दिखते हैं जो सभी तरह के होते हैं। किसी अन्य-अन्य चीज --

यहां पार्टी हो रहा है यहां बहुत सारे आदमी बैठे हैं जो पार्टी मनाने के लिए आए है।

यहां यहां एक बैंक है बैंक का नाम है बैंक आफ बड़ बड़ौदा चौबीसो ए.टी.एम. का यहां एक मोटरसाइकिल लगा है और --